पड़ा हुआ है और पीछे बहुत सारा बड़ा सा लोहे का गेट दिखाई दे रहा है यह कोई मकान का गेट है जिसमें--

पुतलों को साड़ी पेहनाई दिखाई दे रही है और कुछ मकान के पास में कुछ बाईके भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

ये फोटो आपको दिखाई दे रही है जिसमें तीन पुतले दिखाई दे रहे हैं यह कोई गार्डन या पार्क में लगी हुई है और --

कुछ बोरियो में अनार दिखाई दे रहा है व आसपास कुछ संतरे वगैरा पेड़ वगैरा भी दिखाई दे रहे है।

यह फोटो आपको दिखाई दे रही है इसमें ए_टी_एम की फोटो लग रही है और आस-पास --

ये फोटो आपको दिखाई दे रही है एक पहाड़ी की फोटो है जिसमें रॉयल एनफील्ड बुलेट खड़ी दिखाई दे रही है।

और भी दिखाई दे रहे हैं शीशम वगैरह हो स्कूल के पिला फ्रेंम प्रिंट किया हुआ है।

पेड़ पौधे भी लगे दिखाई दे रहे हैं और मंदिर के ऊपर ध्वजा भी लगाई दिखाई दे रही है।

आपको दिखाई दे रहा है ये एक ऑफिस लग रहा है जिसमें कुछ ट्रॉफी कुछ --

इस फोटो में जो आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि एक लड़का कटिंग बनवा रहा है।